यह एक मार्केट का बाहर का फोटो है जहां पर एक जीप दिख रही है। जिसके दो गेट खुले हुए हैं तथा बाहर तीन आदमी खड़े हैं।

यह किसी फंक्शन का फोटो है जिसमें से एक आदमी व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए माइक पे कुछ बोल रहे हैं।

जिसमें से एक औरत की साड़ी का रंग हरा है तथा दूसरे आदमी की दूसरी औरत की साड़ी का रंग येलो है।

इसमें से दो बच्चे ने सेम रंग का टी शर्ट पहना हुआ है जो की ग्रीन है तथा बाकी तीन बच्चे सेम रंग का मीन्स वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है तथा ये सब मिल कर फुटबॉल खेल रहा है।

यह किसी फंक्शन का फोटो है। इसमें बहोत सारे ढोलक वाले ढोलक लेकर के बजा रहे हैं और मैक्सिमम ढोलक वाले का जो शर्ट है उसका कलर लाइट ब्लू ही है।

और अगल-बगल बहोत सारे लोग हैं जो कि इसे देख रहे हैं और इसके साइड में --

अगल-बगल पोडियम पर कोई नहीं है। सामने एक चप्पल दिख रहा है ब्लू कलर का था। इसके जो फर्श है वह बोहोत ही साइन कर रहा है और यहां पर लाइट सब रिफ्लेक्शन हो रहा है।

जिसके बाहर से हम लाइट को साफ-साफ देख सकते हैं और ऊपर एक लाल रंग का इसका बैनर में कुछ लिखा हुआ है जोकि क्लियर दिख नहीं रहा है।

यह किसी मस्जिद का फोटो है जिस मस्जिद पे अभी लाइट लगने के कारण बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं तथा मस्जिद के जो छत है उसे हरे रंग से पेंट किया --

पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। सामने कुछ है जिसमें की पैर वगैरह धो सकते --

और चलने के लिए रोड भी बनाए गए हैं इसके साइड में बोहोत सारी कॉलोनी भी उम्म बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें लोग रहते हुए अगल बगल पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो बोहोत हरे भरे हैं।